और इधर एक पत्ता निकला हुआ बहुत सुन्दर लग रहा है एक आदमी बैठा हुआ है कुछ पे टेबुल है दूर दूर।

यह एक बड़े मछली का ठेले का एक आदमी हुआ है पीछे से ऑटो आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे आदमी है ।